यहां दुकान का आगे एक बाइक दिखाई दे रहे।

बहोत सारा टेबल और चेयर रखा हुआ है।

बिल्डिंग का ऊपर एक नोटिस है जहां बालूरघाट लिखा हुआ है।

ये हॉल में बहुत सारा चेयर रखा हुआ है।

हाईवे का किनार में बड़ा बड़ा शोरूम भी है।

बिल्डिंग के आसपास बहोत सारे गाड़ियां है।

घर का बाहर अलग अलग फूल से भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहोत सारा टेबल और चेयर रखा हुआ है।

टेबल का रंग ग्रीन में दिखाई दे रहे है।

ये रिसोर्ट का हर कोना में बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर लाइट जलाया हुआ दिखाई दे रहा है।

एक घर में बड़ा बड़ा खिड़की दो दिखाई दे रहे है।

घर का बाहर एक टेबल दिखाई दे रहे है।

ये बिल्डिंग पाच फ्लोर का दिखाई दे रहा है।

ये फैक्ट्री में एक छोटा सा गैरेज है जहां गाड़ी पार्किंग किया हुआ है।

अंदर बहुत सारा चेयर और तेबल रखा हुआ है।

टेबल में ढेर सारा चम्मच और ग्लास प्लेट सब रखा हुआ है।

बिल्डिंग का आस पास बहोत सारा घास दिखाई दे रहे हैं।

यहां रूम में फ्लोर मैट बिछाया हुआ है।

रेस्टोरेंट का अंदर लगाया हुआ पर्दा ब्लू और वाइट में दिखाई दे रहा है।

टेबल का ऊपर चाय कप दो दिखाई दे रहा है।

ये दुकान में बाथरूम फिटिंग एसेसरीज रखा हुआ है।

ये एक बड़ा सा बुक स्टोर दिखाई दे रहा है।

एक बच्चा ने ब्लू रंग का कपड़ा और जींस पहना हुआ है।

बिल्डिंग के आगे बारह इंसान दिखाई दे रहे।

मंदिर का रंग सफेद है।

यहां एक बच्चा पीला रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

एक दुकान का सामने और एक दुकान है।

एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो के साथ एक पोस्टर है।

रेस्टोरेंट के दीवार में बहुत सारा फोटोज टंगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा सा रोड हाईवे दिखाई दे रहा है।

यहां टेंपल का कलर सब गोल्डन है।

हां पूरा कंपाउंड में लाइट से सजाया हुआ है।

दीवार में एक लड़की का पोस्टर लगाया हुआ है।

यहां बहोत बड़ा बड़ा बिल्डिंग तीन ठो दिखाई दे रहा है।

गेट का रंग काला में दिखाई दे रहा हैं।

पेड़ों के बीच दो छोटे छोटे घर हैं।

बाल्टीन के कलर लाल है।